इस तस्वीर मे बहुत सारे पेड़ पौंधे दिखाई दे रहे है घर दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है हरे भरे पेड़ पौंधे दिखाई दे रहे है घास दिखाई दे रहा है।